पे एक शिव जी की मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है जिसका कलर गी --

यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।